नमस्कार abstract classes पर spoken tutorial में आपको स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे abstract methods और concrete methods
abstract classes और concrete classes और
abstract classes का उपयोग कैसे करना है
इस tutorial के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ ubuntu ऊबंटु 1204 jdk 17 और eclipse 431
इस tutorial का अनुसरण करने के लिए आपको java और eclipse ide का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए
आपको java में subclassing का ज्ञान भी होना चाहिए
यदि नहीं है तो प्रासंगिक java tutorials के लिए कृपया दिखाए गए link पर जाएँ
पहले हम abstract मैथड के बारे में सीखेंगे
एक abstract मैथड एक मैथड है जो implementation के बिना घोषित किया जाता है
यह abstract कीवर्ड का उपयोग करके घोषित होता है
इस मैथड के लिए कोष्ठक को खोलना और बंद नहीं करना चाहिए
सैम्पल program के साथ abstract class के उपयोग को समझते हैं
अब हम eclipse पर जायेंगे और abstractdemo नामक now project बनायेंगे
इस project में हम abstract classes के उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक classes बनाएँगे
अब src folder पर rightclick करें औऱ new> class पर click करें
person के रूप में class का name type करें और enter दबाएँ
add हम name का प्रतिनिधित्व करने के लिए field और person की उम्र जोड देंगे type करें string name semicolon
इसके अलावा type करें: int age semicolon semicolon
अब source पर click करें और generate constructor using fields चुनें
उत्पन्न code से super कीवर्ड डिलीट करें
constructor name और age fields की values को इनीशिलाज कर सकता है
अब हम concrete method के बारे में सीखेंगे
concrete मैथड को पूर्ण रूप से curly brackets में लागू कर दिया है
हम इस class में नेम और add print करने के लिए concrete मैथड जोडेंगे
screen पर प्रदर्शित निम्न code को type करें
यह मैथड showbasicdetails यहाँ सचित्र है यह concrete मैथड का एक उदाहरण है
ध्यान दें कि यह मैथड पूरी तरह लागू किया गया है
add हम इस class के लिए abstract मैथड जोडेंगे
अत: type करें public void showdetails semicolon
एक error आती है क्योंकि हमने अभी तक abstract मैथड नहीं जोडा है
अत: abstract कीवर्ड जोडें
अब हम एक और error देख सकते हैं
यह इसलिए क्योंकि abstract मैथड केवल abstract classes के लिए जोड़ सकते हैं
अत: इसे abstract class बनाने के लिए person class में abstract कीवर्ड जोड़ें
class person यहाँ एक abstract class प्रदर्शित करता है
इसमें showdetails नामक abstract मैथड शामिल है
figure यहाँ एक inheritance relation का प्रतिनिधित्व करता है
यहाँ person class एक abstract class है
employee class और student class person class के subclasses हैं
ये subclasses अपने स्वयं के विभिन्न कार्यान्वयन प्रदान कर सकते हैं
इसे person class में उपस्थित showdetails मैथड द्वारा किया जाता है
उदाहरण के लिए employee class में showdetails मैथड employee id और salary prints करता है जबकि student class में showdetails मैथड student register number और grade prints करता है
फिर default package पर rightclick करें और employee नामक अन्य class बनाएँ
अब इसे person class का subclass बनाने के लिए type करें extends person
अब हम eclipse ide में एक error देख सकते हैं
यह इंगित करता है कि हमें abstract method showdetails से एक implementation प्रदान करना चाहिए
हम इसे थोडी देर बाद करेंगे
अब employee id और employee salary को दर्शाने के लिए दो field बनाएँ
अत: type करें string empid semicolon और int salary semicolon
अब source पर click करें और फिर generate constructor using fields चुनें
यह constructor name age empid और salary की values इनीशिलाज कर सकता है
अब showdetails मैथड परिभाषित करते हैं अत: type करें public void showdetails
इस मैथड में हमें employee की जानकारी को print करना होगा
screen पर प्रदर्शित निम्न code type करें
ध्यान दें error गायब हो जाती है एक बार जब showdetails मैथड लागू किया जाता है
आगे हम project के student class के बारे में देखेंगे
मैंने पहले से ही student नामक subclass बनाया है
यहाँ student class में दो fields हैंregister number और grade जो student रजिस्ट्रैशन number और grade को दर्शाता है
इस class में constructor भी बनाया है
इस constructor का उपयोग name age register number और grade की values को इनीशिलाइज करने के लिए किया जाता है
showdetails मैथड इस class में भी लागू किया गया है
यह student register number और grade की values को prints करता है
अब ध्यान दें employee class का अपना स्वयं का showdetails का कार्यान्वयन है
और student class का अपना स्वंय का showdetails का कार्यान्वयन है
अब default package पर rightclick करें
new> class पर click करें और demo name type करें
इस class में हमारे पास main मैथड होगा
अत: type करें main और फिर main मैथड बनाने के लिए ctrl + space दबाएँ
अब person p equals new person टाइप करके person class को दृष्टांत करने की कोशिश करें
brackets और double quotes में type करें john और semicolon डालें
अब हम एक error देख सकते हैं यह इसलिए क्योंकि person class abstract है और यह दृष्टांतिकृत नहीं है
इस line को हटा दें
screen पर प्रदर्शित निम्न code type करें
अब employee class person p1 equals new employee के रूप में person class को दृष्टांतिकृत करते हैं
पहली line में हम विभिन्न arguments की values को पास कर रहे हैं
john employee name को passed करता है
40 age की value है
e267 employee id की value और 10000 employee salary की value है
अब हम p1 showbasicdetails के रूप में person class में concrete मैथड लागू कर सकते हैं
हम object p1 को p1 showdetails के रूप में showdetails मैथड कॉल कर सकते हैं
इसीतरह student class का उपयोग करके person class दृष्टांतिकृत करें
यह person p2 equals new student के रूप में प्रदर्शित है
अब हम विभिन्न arguments के लिए values पास कर रहे हैं
हम object का उपयोग करके showbasicdetails मैथड और showdetails मैथड को लागू कर सकते हैं
अब इस demo program को now करते हैं
तो class demo पर right click करें और फिर run as> java application चुनें
हम बुनियादी जानकारी जैसे कि name और age output देख सकते हैं
ये showbasicdetails मैथड द्वारा printed होते हैं
अन्य employee जानकारी जैसे कि employee id और salary showdetails मैथड द्वारा printed होती हैं
इसीतरह छात्र की बुनियादी जानकारी जैसे कि name और age showbasicdetails मैथड द्वारा printed होती हैं
छात्र की अन्य जानकारी जैसे कि student register number और grade showdetails मैथड द्वारा printed होती हैं
इसी के साथ हम tutorial के अंत में पहुँचते हैं संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा: abstract methods और concrete methods
abstract classes और concrete classes और abstract classes कैसे बनाना और उपयोग करना है
नियतकार्य के रूप में एक abstract class vehicle बनाएँ जिसमें abstract method run शामिल हो
subclass car class बनाएँ जो vehicle class का विस्तार करता हो और run मैथड लागू करें जो car is running on 4 wheels prints car
subclass bike भी बनाएँ जो फिर से vehicle class का विस्तार करता हो और run मैथड लागू करें जो bike is running on 2 wheels prints करे
परिणामों की पुष्टि करने के लिए main मैथड वाली demo class भी बनाएं
निम्न link पर the गए video में spoken tutorial project का सारांश है कृपया download करें और देखें
spoken tutorial project teamspoken tutorial का उपयोग कर कार्यशालाएं आयोजित करती है और
online परीक्षा पास करने वालों को प्रमाण पत्र देती है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
spoken tutorial project को nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा समर्थित है
इस mission पर अधिक जानकारी यहां उपलब्ध है:
यह script विकास द्वारा अनुवादित है
iit बॉम्बे से मैं जया आपसे विदा लेती हूं हमसे जुडने के लिए धन्यवाद